यह नाव एक तालाब मे है यहा तालाब में काफी पानी है |

यहाँ बगीचे के किनारे बहुत बहुत बड़े बड़े छोटे बड़े पेड़ पोधे लगाए गए है ।

दुकान मे पंखे भी लगे हुए है यह दुकान मे --

बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे भी लगें हैं |